डलिया है डलिया मे भी फूल रखा गया है कई कलर का फूल है पीला कलर की हैहरा कलर की है गुलाबी कलर की है लाल कलर की है ।

यह मकान है ऑफिस जैसा दिख रहा है बहुत सुंदर से बनाए गए है बगल में भी मकान है।

सूट सलवार पहनी हुई है एकांत में बैठी हुई है मास्क लगाई हुई है चप्पल पहनी है बोर्ड लगा हुआ है ।

जे सिलाई-बिनाई सिख रहा है एक लेडीज है सिखा रही है चश्मा लगाई हुई है ड्रेस पहनी है कुर्सी है गमला है।

यह मिठाई के दुकान है यहाँ पे मिठाई रखा हुआ है और कुछ रखा हुआ है पेड़-पौधा दिख रहा है आसमान दिख रहा है।